एवं यहाँ तैरने एवं पानी से नहाना। यह एक लाभदायक एवं सुन्दर जगह है।

यह एक रेलगाड़ी है एवं रेलगाड़ी के पटरियाँ --

यहाँ के लोग फू यहाँ फूल कई तरह के दिखाए दे रहें हैं एवं --

बुजुर्ग के लिए बहुत लाभदायक है ।

गा के सभी दर्शकगणों को सुनाना --

यह एक काली जी का मंदिर है जो की यहाँ पे सजावट एवं भक्त गनों की उपस्थिति --